जंगल दिखाई दे रहा है जो कि यहा पर बहोत सारा व्यक्ती है।

एक व्यक्ती वहा पर नहा रहा है एक व्यक्ती पीले कलर का टी शर्ट पहना है जो साइड मे है।

सामने एक रोड पार हुआ है जो कि बहुत सारा बाइक रखा हुआ है व्हाइट के बाइक के ऊपर हेल्मेट रखा है।

एक घर है जिनमें थीं व्यक्ति है साइड में चेयर रखा है चेयर के ऊपर बैग रखा हुआ है बहुत सारे कॉपी किताब नीचे फेकाया है।

सामने एक बहुत बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जो कि दो मंजिला का है इसमें ए_सी लगा हुआ है।

एक बड़ा सा नदी है नदी में बहुत पानी है इसके बीच में एक ब्रिज बनाया है दोनों साइड रेलिंग घेराया है।

साइड में एक खिड़की है खिड़की के साइड में पर्दा लगा हुआ है।

तीन व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जो साड़ी पहना हुआ है काउंटर के पास है। एक व्यक्ति उधर जा रहा है ।

बहुत सारा गाछ लगा हुआ है घर का कलर सफेद कलर का है गेट उसका हर कलर का है।

साइड में एक अम अमरूद का पेड़ है साइड में एक पेप लगाया है।

गेट है लगाया हुआ गेट का कलर मिट्टी कलर का है नीचे भी बड़ा सा गेट लगाया है।

एक स्विमिंगपूल है स्विमिंगपूल के अंदर फू ब्लू कलर का पेंट किया है साइड में लीलटेन है।

एक साड़ी का दुकान है दुकानदार साड़ी एक खोला हुआ है चारो से साड़ी यहाँ पर रखा है।

एक साइड में प्लास्टिक रखा हुआ है एक हि दुकान कपड़ा से भरा हुआ है।

हमें एक रोड दिखाई दे रहा है हरा कलर का रबिशटर लगा हुआ है तीन पीलर दिया है।

तरह तरह का अगरबत्ती रखा हुआ हैसब कंपनी का रखा हुआ है।

बड़ा सा दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारा लाइट जलाया है उसके ऊपर छाजा छा किया हुआ है जो कि त्रिपाल लगाया है।

ऊपर में करकट से सजाया है जो कि ब्ल्यू कलर का करकट है। पेंट है सफेद कलर का।

व्यक्ति साइड में खड़ा है जो सफेद कलर का पहना हुआ है।

एक बड़ा सा पिलर दिया है इसके नीचे बहुत व्यक्ति बैठा हुआ है बाइक दिखाया दिख रहा है।

इधर दो आदमी फोटो खींचा रहा है।